सामने मे एक हॉल नज़र आ रहा है हॉल के तरफ में बाहर एंट्रेंस पार्क रखी हुई है उसमें सीढ़ी नज़र आ रही है एंट्रेंस मे मैरून कलर का प्रयोग किया गया है।

में कुछ घर नजर आ रहे हैं लोहे की रेलिंग नजर आ रही है यहां--

सामने में एक मैदान नजर आ रहा है यह एक गार्डन है गार्डन में कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे कुछ सुखे पेड़ नजर आ रहे कुछ हरे पेड़ नजर आ रहे।

जमीन पे उन्होंने मार्बल बिछा रखा है। मार्बल का रंग ग्रीन है।

सामने में एक झरना नजर आ था है जोकि बहोत उपर से लग रहा है आ रहा है उसमे झरने में वाइट कलर का दिख रहा है।

समान को उठाके इधर से उधर ले के जाए जा रहे कुछ लोग उठा के समान को अपने कंधे पे उधर से भी ले के आ रहे है।

यहां पे पानी खड़ा हो जाता है गाड़ी आने --

और उसमें जो छोटे पेड़ हैं और बड़े पेड़ हैं वो हरे रंग के हैं।

कुछ लोगों ये काम कर रहे हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं यहां पे थोड़े से पत्थर रखे हुए टाइल रखी होईं--

कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं घास को खोदा जा रहा यहां से।

कुछ लोग रथ को रथ रस्सी से पकड़ के खीच रहे है पीछे में घर रहे हैं।

लगी हुई है पीछे में दीवार में ब्लू कलर का प्रयोग किया गया व्हाइट कलर का प्रयोग किया गया और रानी कलर का प्रयोग किया और लोगों की भीड़ जमा है।

सामने में छोटे छोटे से मंदिर नजर आ रहें हैं यहां पे फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई है घास के बीचों बीच--

सामने में एक शॉप दुखाई दे रही है ये शॉप कपड़े की है यहां पे कुछ लोग कपड़ा देख रहे हैं लेडीज का सब कपड़ा मिलता है एक पिलर है पिलर के ऊपर पंख लगा रखे हैं इन्होंने।